आसमान में दो पतंगे उड़ती हुई दिखाई दे रही है।

नीचे की जमीन पे काफी गंदगी गिरी गई है।

कुछ पे व्यक्ति बैठे हुए हैं और कुछ कुर्सियां खाली है।

और ऊपर की छत पर काफी सारे छोटे छोटे लाइट लगाए गए हैं।

इसमें काफी सारे बेंचेस लगे गए हैं।

और सामने की पिलर पे एक पंखा लगाया गया है।

और एक करकट का छत भी दिखाई दे रहा है इसमें लोहे के रॉड लगाए गए हैं।

उसके आगे एक टेबल रखा गया है।

यह एक योनो एस_बी_आई ए_टी_एम का दृश्य है इसमें काफी सारे व्यक्ति अंदर नजर आ रहे हैं।

और एक गेट भी नजर आ रहा है जिसमें शीशा लगाया गया है।

इसमें एक बड़ा आ रेख नज़र आ रहा है और उसमें टाइल्स लगाए गया है।

तो एक फेविकोल भी रखा गया है।

उसके ऊपर भी काफी सारे सामान रखे गए हैं।

उसके हैंडल पे दो झंडे लगाए गए है।

एक बड़ा सा रैक और टेबल नजर आ रहा है।

यह एक स्तबल के अंदर का दृश्य है जिसमें दो गधे नजर आ रहे है।